इसटेसन पर बहुत से बिजली के खम्मे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

दुकान के बाहर एक व्यक्ति बाहर दिखाई पड़ रहा है।